इस इमेज में मुझे दिखाई दे रहा है बहौत सारे स्‍तंभ और ईंट जिससे --

सूड के ऊपर बैठा हुआ है और हाथी के दो पैर ऊपर की तरफ है यहां --

जो हड़े हैं और इसके सामने एक बाइक भी रखा हुआ है।

जो काले पीले और लाल कलर के हैं।

अह इमारत की तरफ़ जा रहे है और एक अ औरत गेट की तरफ़ आ रही है और इस गेट के अंदर प्रवेश निषेद है ।

और अ उसके सामने अ दो बाइक अ खड़ी हुई है जिसमें हेलमेट भी है।

आं कु दो लोग खड़े हुए हैं ये अमृत बुक स्‍टोर है।

और इस्म इसमे कुछ पैकेटस भी है और चीय चीयर है बहुत सारे लाइटस है ।

आ पता का भी है और बहुत आ आदमी चल रही है एक।

बाल कटरा र रही है और आ पीछे एक लड़का उसका फोटो ले रही है और इस--

आ खड़े है और क तीन बेड भी है और कुछ मशीनस है और कुछ कर्टनस लगे हुए हैं।

और एक लड़का यहां फोन देखते हुए अ जा रहा है।

और ये एक हेल्‍थ मिशन की आ कुछ बेनर है और इसमें --

इस इमेज में मुझे‍ दिखाई दे रहा है बहुत सारी भगवान की मूर्तिंया और एक औड़त आ भी है --